ऊपर की ओर एक छोटा सा रेड कलर का बैनर लगा हुआ है जिस पर व्हाईट कलर से स्कूल डॉट कॉलेज लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

दूसरी साइड जीने बने हुए हैं और एक लिफ्ट भी लगी हुई दिखाई दे रही है।

इस पिक्चर में एक गुरुद्वारा दिखाई दे रहा है जिसमें एक व्हाइट कलर की चादर बिछी हुई है।

बाहर कुछ सोफे पड़े हुए हैं और दूसरी साइड कुर्सियां पड़ी हुई है और एक टेबल भी दिख रही है।

आगे की ओर एक जराकुश का पेड़ भी लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

रूम में एक बेड पड़ा हुआ दिख रहा है जिसके ऊपर दो तकिया रखी हुई है।

एक बच्चों वाली कार दिखाई दे रही है जिसमें आंख मुंह बना हुआ है जो कि ग्रीन कलर की है।

इस पिक्चर में एक मॉल दिखाई दे रहा है जिसमें बहोत से गेम बच्चो वाले लगे हुए है।

इस पिक्चर में एक लाइब्रेरी दिखाई दे रही है जिसमें सामने की ओर बहुत से कपबोर्ड बने हुए हैं।

कुर्सियों पर गोल्डन कलर का कवर चढ़ा हुआ है और रेड कलर से बंधा हुआ है।

हर केबिन के सामने एक कुर्सी पड़ी हुई दिखाई दे रही है जो कि ब्लैक कलर की है।

कुछ लोग स्विमिंग पूल के अंदर हैं और कुछ लोग स्विमिंग पूल के बाहर खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं।